ये एक बहुत बड़ा गार्डन टाइप का बना हुआ है यहाँ पर बहुत सारे--

आगे से और पीछे से ब्राउन कलर का है आसपास उसके रेलिंग बनी हुई है और साइड में एक और रोड है जाने का ये टू वे रोड है एक आने का --

यह एक दुकान है जिसका नाम है माँ अम्बे फोटो कॉपी एन्ड स्टेशनरी यंहा पे फोटो कॉपी भी होती है और स्टेशनरी भी --

साइड में पेड़ लगे हैं और सा आगे दो कार खड़ी हुई हैं पैलेस का कलर स पूरा वाइट हैं।

ये एक नदी है जो कि साइड में भी थोड़ा-थोड़ा पानी भरा है कुछ जगह सुखी पड़ी है साइड मे एक मंदिर बना हुआ है छोटा-सा ओ पुरी पथरीली जगह है।

--और है ना कार्टूनस की और बहार एक ग्राउंड है बच्चों के खेलने का पेड़ लगे--